लाईक अ बिस्तर है एक बैठा हुआ है एक लेडिस एक डॉक्टर है।

तारा भोजनालय एक होटल हैऔर जो कि रोड के पास है एक लेडीज है लेडीज के हाथ में एक बच्चा है।

शॉप है शॉप के अंदर बहुत सारी आइटमें रखी हुई है तेल बिस्किट ।

उसके नीचे दो गाड़ियां पार्क की हुई हैं।

एक अपने ग्राहक की धाड़ी काट रहा है।

खेलने वाला एक मैदान है पीछे ट्री है।

और पास पानी है जहाज है सूर्या हैं।

थैले में एक मिर्ची का ओ डब्बा है।

एक बड़ी सी कलका का एक स्टेशन है।

एक बस स्टैंड है बस है बहुत सारे आदमी हैं एक लेडीज है।

बहुत सारी सब्जियां हैं उन सब्जियों को बेचने वाले दो दुकानदार हैं थोड़े से ग्राहक हैं।

एक इंसान है दो इंसान है।